जहां बहुत बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

और यहां पर एक आदमी की परछाई भी दिखाई दे रही है।

सामने के तरफ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।

और यहां एक बैनर भी लगा हुआ है।

और यहां पर एक छोटा सा घर भी दिखाई दे रहा है।

आगे के तरफ मुझे एक काउंटर दिख रहा है।

और नीचे की तरफ बहोत सारे पूजे का सामग्री दिखाई दे रहा है जहां हवन हो रहा था।

और बहुत सारी खिड़कियां भी लगी हुई है।

सामने मुझे एक मस्जिद दिखाई दे रहा है।

आगे की तरफ बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं।